मुझे यहां पर एक दादा जी दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहां पर एक बाल्टी दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर पीले रंग की नांव दिखाई दे रही है और उसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है।

मुझे यहां पर पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहां पर ढलान भी दिखाई दे रही है।

मुझे मैदान और आकाश भी दिखाई दे रहा है बादल--

मुझे यहां पर काले रंग की दो कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

वो सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और मुझे यहां पर एक पंखा दिखाई दे रहा है और मुझे यहां पर दो माइक दिखाई दे रहे हैं।

चार गिलास दिखाई दे रहा है और उसके एक फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है और नदी के पास में मुझे बिजली बनाने का प्लांट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

मुझे यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है और मॉल में पीले रंग के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।

उसके अंदर मुझे एक चेकअप मशीन भी दिखाई दे रहा है जो की व्हाइट रंग का है।

मुझे यहां पर मिट्टी दिखाई दे रही है जो कि व्हाइट रंग की दिख रही है।

मुझे ये एक मैदान दिखाई दे रहा है और यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है।